जोकि लोगो ने अपनें पार्क में घुमने के लिए बसों की सवारी की है और बहुत ही अच्छी बस है यहाँ पे देखने में भी बहुत काफ़ी मात्रे में आदमी लोग बैठे है अपने जंगल की सफ़र करने आऐ है बहुत ही अच्छा गाड़ी है।

यह एक बहोत बड़ी सी मार्किट है जोकि बहोत बड़ी माठ है और यहाँ पे बहोत ही अच्छा साफ़ सफाई और बहोत ही बेहतरीन देखने में लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सजाया गया है चित्र द्वारा और यहाँ पे बहुत अच्छा मूल्ये पर--

आ खेलने कूदने का भी है झुलना झूलना भी है बैठने के भी बहुत ही अच्छे-अच्छे जगह है बहुत ही सुन्दर पार्क है।

यह एक बहोत ही शानदार सेलून है जोकि यहाँ लोंगो अपनें जरूरत के अनुसार यहाँ पे बाल दाड़ी बनाने के लिए आते है यहाँ पे बहोत ही अच्छा व्यवस्था की गई है जोकि दो चार आदमी आ जाए है तो भी आराम से बैठ सकते है चेयर लगा हुआ है बहोत ही अच्छा है।

अच्छे सीन आएंगे और बहुत ही सुन्दर लग रहा है बाग बगीचे के अन्दर बहुत ही अच्छा एरिया --

यह एक बहुत ही बड़ा ऑफिस है जो कि यहाँ पे लोग अपनें कार्य के लिए आते है कार कर कर कर यहाँ पे आसानी से अपनें घर पे जाते हैं और बहुत ही अच्छे --

यहाँ एक बहुत ही खबसूरत मंदिर ई यह स्कूल है जोकि यहाँ पे स्टूडेंट्स पड़ने के लिए आते है और बहुत ही अच्छा है भारी मात्रा में अह यहाँ पे व्यवस्था है बैठने के लिए टेबल कुर्सी हरेक तरह का यहाँ पे है चेयर है बहुत ही सुन्दर लग रहा है देखने में--

बहुत ही अच्छा प्रेड आश्रम है बहुत--